ब्लैक रेड कलर का तकिया भी है।

जिसपे ब्लू और वाईट कलर के ड्रैस पहन के बहुत सारे बच्चे खडे है।

एक कैंडल दिखाई दे रहा है।

घर अच्छे से बना नहीं है काम हो रहा है।

जिसमें शिवम हार्डवेयर लिखा हुआ है।

सीढ़ी पे बगल में केले के पत्ते दोनों साइड से लगा दिए हैं।

अंदर का भी गेट खुला हुआ है इधर ये भी गेट खुला हुआ है।

बैट पे एक लड़का बैठा हुआ है एक लड़का बैट से क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा हैं।

नीला कलर का मशीन है नीचे प्लास्टिक लगे हुए हैं।

आश्रम के पीछे एक दीवाल भी नजर आ रहा है।

शिव और पार्वती जी की प्रतिमा जैसा बना हुआ है।

बगल में इलेक्ट्रिक बोर्ड भी है ऊपर पोस्टर जगदंबा इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है।

पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं हरियाली है।

थोड़ा सा ग्रीन कलर का गेट है।

लाइट लगा हुआ है।

नीचे फ्लोर पूरा साफ दिखाई दे रहा है।

कार को देख के लग रहा है नया है।

कार के अंदर एक आदमी नजर आ रहा है।

नीला कलर का गेट है यहां पे एक बड़ा सा बल्ब है इधर बगल में दुकान है ।

बजरंगबली का मंदिर है बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं।

देख के लग रहा है स्टेडियम है यहां।

एक आदमी उधर पीछे घूम कर बैठा हुआ है।

लाइट जैसा सूर्य भगवान का आ रहा है वैसे लग रहा है कि संध्या का समय ही है।

नीचे पूरा डिजाइन किया हुआ है।

एक घड़ी है जहां पे दो जीरो आठ दो छब्बीस कुछ लिखा हुआ है।

उधर पीछे बर्गर कंपनी लिखा हुआ है ऊपर अच्छा लाइटिंग है।